इस चित्र में जे_एम इंटरनेशनल स्कूल का पोस्टर लगा हुआ है।

और ऊपर की बिल्डिंग पर मणिपाल हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

यह एक स्विमिंग पूल का चित्र है। यह स्विमिंग पूल ग्रीन कलर का है।

यह एक ऑफिस का चित्र है इस ऑफिस में वाइट कलर के रेग्स बने हुए हैं।

यह एक मंदिर का दृश्य है इस मंदिर के मुख्य द्वार पर गेट नंबर चार का पोस्टर लगा हुआ है ।

यह एक दूल्हा दुल्हन की फोटो है दूल्हे ने क्रीम कलर की शेरवानी पहनी है।

इसी के साथ में एक बड़ी बिल्डिंग भी नजर आ रही है।

और बहोत सारे बेंचेज रखे हुए हैं उन बेंच पर कई लोग बैठे हुए हैं।